तो गाइस इस वीडियो मे हम देख पा रहे है कि ये कोई जगह दिखाई दे रही है जो पहाड़ो वगैरा मे दिखाई दे रही है।

और आप देख सकते हैं ये लैंप वगैरा बनाए हुए हैं और--

हर तरह की मच्छी वगैरा फीसिस फ़िशेस वगैरा रखी हुई है जैसे आप देख सको बड़ी बड़ी छोटी छोटी--

देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा दिखाई दे रहा है मिट्टी मिट्टी चारों तरफ दिखाई दे रही है एक मशीन खड़ी हुई है।

काफी बड़े-बड़े पेड़ और लाइटिंग वगैरा भी लगी हुई --

तो इस फोटो में हम देख पा रहे हैं--

तो इस फोटो में हम देख पा रहे हैं ये एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिस पे काफी पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रही है पथरीला पहाड़ है और--

और इसमें ये बेल्स वगैरा पौधे वगैरा उग रही हैं।

आदमीया के लड़किया के कपड़े मिलै जिस तरह जीन्स टी_शर्ट --

बुक कॉपी वगैराह दरी है और अंदर आप देख सकूं हो पेन --

इस फोटो में हम देख सकते है ये कोई रेस्टोरेंट या ढाबा बना हुआ है।

से जा रहे हैं और काफी दूसरी साइड से आ रहे हैं।

बैठा हुआ और एक बड़ी मशीन पर सिलाई कर रहा है एक आदमी है जो खड़ा हुआ है।

और इस फोटो में हम देख सकते हैं एक इंजीनियर है।

यहां पर वायर वगैरा काट रहा है इसने आपने हेलमेट से पेहने हुए है उसके पीछे देख सकते हैं आप का काफी बड़ा एक ट्रांसफार्मर --

इस फोटो में हम देख सकते हैं ये एक बस है और--

जेंट्स की जैकेट वगैरह मिलती है तीन स्टैचू हैं जिनको अलग अलग कलर की जैकेट और शर्ट --